चित्र में बड़ा सा एक मॉल है जोकि वी-मार्ट टाइगलेस फैशन लगा हुआ है लिखा हुआ है नाइंटी नाइन का वन नाइंटी नाइन --